जी यह एक शॉप दुल्हन वेल फीलिंग का रिसेप्शन हैं या--

उन्हें स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए कर रहे है सुनियोजित और सुसज्जित जगह है स्टाफ है।

रायपुर छत्तीसगढ़ के गोल बजार में भी इनका एक ब्रांच है।

यहां पर एक नाव रखा हुआ है तथा दो युवक भी है।

और एक लेडिज भी है जिनके हाथ में क्रीम कलर का कैरी बैग है।

में इस तरह की सजावट काफी अच्छी लगती है कुछ युवक बाहर खड़े हुए है एक बच्चा और कुछ युवतियां भी होती है अभी उपस्थित है।

एक अलग से डिपार्टमेंट की है जो हर स्टेट में होती है हर राज्य में पी_डब्लू_डी एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है।

लर चल रहे हैं तथा रात का समय है।

जिसमें शेड नहीं दिख रहा है तथा पीछे कुछ पौधे लगे हुए है।

यह तस्वीर एक नृत्य क्लास की है।

यह छत्तीसगढ़ की रायपुर में स्थिति--